और मुझे छे ठो घर दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में पांच सौ टेबल दिखाई दे रहा है और बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

और वहां में एक ठो लड़का खाना खा रहा है और एक ठो लड़का कुछ दे रहा है।

यह पिक्चर में जेंनथो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में तीन ठो टेबल दिखाई दे रहा है।

मुझे फ्लावर दिखाई दे रहा है।

और बस के पीछे में बहोत सारा पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है।

मुझे ये पिक्चर में एक क्यू_आर कोड दिखाई दे रहा है।

मुझे वहाँ में लायन का मूर्ति दिखाई दे रहा है।

और आदमी के पीछे में काला दिखाई दे रहा है।

और वहां में एक ठो डस्टबिन रखा हुआ है और टेबल के ऊपर में एक टिसू पेपर रखा हुआ है।

और वो लोग डांस कर रहा है।

और लायन के सामने में मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है।

और मुझे व्हाइट कलर का पत्थर देख रहा है।

मुझे ये पिक्चर में बहुत बड़ा स्विमिंग पुल दिखाई दे रहा है।

टेबल रखा हुआ है और बहुत सारा चेयर रखा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर में एक रिज़ोर्ट दिखाई दे रहा है।

एक ठो बड़ा वाला पेड़ दिखाई दे रहा है।

और वहां में बास्केटबॉल खेलने के लिए जगह है और वहां में बहुत सारा स्कूल है।

और मुझे यहां से लेफ्ट में एक ठो घर दिखा रहा दिखाई दे रहा है।

ये घर में ये टीना में ग्रीन कलर का कलर लगा के हैं।